एक आदमी साइड में बैठ कर काम कर रहा और वर्कर है यहां पे--

ये एक बोट है पानी में इसमें एक आंख बना हुआ है बोट पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है।

एक पुलिस स्टेशन है जिसके सामने ब-बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं दो आदमी चल के जा रहे हैं एक आदमी साइकिल ले के आ रहा है एक आदमी बाइक ले के आ रहा है।

ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहोत सारे कांच लगे हुए हैं| बिल्डिंग के निचे ठीक एक ए_टी_एम है जिससे पैसे निकालते हैं हम लोग| उसके ऊपर में एक कपड़े खरीदने की जगह है।

ये होटल के अंदर का फोटो है जिसका ज़मीन जो है ब्रोवन्न्न्न ब्राउन कलर का है।

आधा रंग हुआ है व्हाइट कलर से आधा बाकी है नीचे पूरा बालू का बस्ता रखा हुआ है नीचे पूरे बालू-बालू रखे हुए हैं बास-वास रखा हुआ है।

ये एक म्यूजियम का है जिसमे बंदूक टोपी रखे हुए है इसमें टोटल तीन बंदूक पुराने ज़माने के रखे हुए हैं ।

यह एक बहुत पुराना जगह लग रहा है घर जैसा जिसके तीन दीवार है इस के पीछे पिलर है पेड़ --

इसके अंदर दो आदमी खड़े हैं| इस के ऊपर में ग्रे कलर का पूरा बादल है पूरा आसमान ग्रे कलर का है| इसके नीचे बहुत सारे द्वार है अंदर जाने इसके बगल में एक और मन्दिर है छोटा-सा।